और इस पर एसा लग रहा है जैसे मानो बर्फ पड़ी हुवी हो ओर पेड़ों पर भी बर्फ लगी हुवी पिरतीत होती --

और दीवारें भी टूटी हुई प्रतीत होती है जो काफी टाइम का हो चुका है और इसके बाहर फुलवाड़ी लगी हुई है।

और सहतूत का पेड़ भी है और गुलहड़ का पेड़ है।

यह भी एक बाल काटने की दुकान है जो बस स्टेशन उधारी के पास है।

यहाँ यह मेट्रो दोनों शोरूम में खड़ी हैं जो बिल्कुल नई है और इस शोरूम की दीवाल का कलर सफेद है।

यह एक ऑटो है इसके बाहर में एक शेर का साइन लगा हुआ है। ऑटो जिस सड़क पर खड़ा है उस सड़क का निर्माण सीमेंट की ईटों से हुआ हैं और उसके पीछे काफी भीड़ खड़ी हुई हैं।

येह मुस्कान हेयर कटिंग सैलून है। इस के बाहर आरसीसी रोड है और साइड में एक पाइप लगा हुआ है प्लास्टिक का।

से काफी अच्छा है और एक लंबा ऊँचा सा झंडा लगा है और एक रोड वेज हैएक मिनी मेट्रो हैदूसरी मिनी मेट्रो हैएक ऑटो हैएक वेन खड़ी है।